येहे एक हरे-भरे जंगल का दृश्य है हाँ पीछे बड़े-बड़े पहाड़ दिखाई दे रहे है और हरे-भरे छोटे बीच भी दिखाई दे रहे है।

हुआ है और कुछ मोटरसाइकिल रखे हुए है सामने एक आदमी खड़ा है।